इस इमेज मे मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है। एक दादाजी दिखाई दे रहे हैं। लड़के ने --

बाजु में नीले रंग की शटर है जोकि बंद दिखाई दे रही है। ऊपर दो ए.सी. की चिमनी दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में मुझे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड दिखाई दे रहा है। रेसिंग कोच दिखाई दे रहा है। जहाँ चार बच्चे दौड़ रहे हैं। तीन ने पीले रंग --

इस इमेज में मुझे गार्डन दिखाई दे रहा है। बड़े छोटे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। कलरफुल फुल दिखाई दे रहे हैं। ला --

इस इमेज में मुझे एक आदमी लग एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जोकि फ़ोटो खिचवा रहा है। उसके पास महिला दिखा दे रही है।

इस इमेज में मुझे बस स्टैंड दिख रहा है। सफ़ेद कलर की बस दिख रही है और लाल रंग की बस दिख रही है। लोग आते जाते दिख रहे हैं। खारी से खाली --

किताबें दिख रही है बच्चे उनकी बातें सुनते हुए दिखाई दे रहे है काफी सारे बच्चे है कुछ महिलाऐं है कुछ आद लड़के दिखाई दे रहे --